उसके आस पास मे थोड़ा घास है और सामने एक --

यहा पे एक समुद्र है और समुद्र मे पानी गहरा है।

मंदिर के सामने गेट के सामने एक साइकिल पार्क की हुई है।

अ आवें कप अलग-अलग --

कई सारी स्ट्रॉबेरी को रखके उ केक को सजाया गया है।

यहाँ पे एक प्राचीन काल की गुफा है।

जिसके ऊपर बड़े अक्षरो से डॉक्टर भीम राव अंबेडकर पार्क लिखा हुआ है।

और जिम के अंदर कसरत करने के लिए कई सारे सदन लक्खे हुए है।

और शॉपिंग मौल के बहार एक रास्ता है।

और उसके अंदर कई पुरुष महिलायें भी हैं जो कुछ ना कुछ दुकानों से खरीद रहे हैं।

दोनो ओर एक काली गाड़ी और दो व्हाइट गाड़ी खड़ी हुई हैं।

और सामने एक तीन पुरुष और एक महिलाएं आई है।